रात का समय है एक वृक्ष भी हैं आगे --

गोल्डन जुबली ईयर दो हजार उन्नीस लिखा हुआ है और प्रोफेसर चंद्र यादव है।

यहां के इंस्ट्यूट ऑफ इंस्ट्यूट ऑफ नर्सिंग का नर्सिंग है जो काशी बाजार छपरा में आ सारण में है।

इसमे एक प्रतिमा है एक चाय पीने वाला कुल्लर---

बहुत तरह के पौधे है इसमे पोते को --